कुछ प्रोटीन एक्स के डब्बे एक चेयर देख पा रहे हैं कुछ संसर शैंपू का डिब्बे देख पा रहे हैं ऑल आउट के कुछ डिब्बे देख --

ब्लू कलर के स्किन कलर के वाइट कलर के वालेट कलर के--

ऊपर में एक हम लोग होर्डिंग देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है पीटर इंग्लैण्ड--

जो वाइट कलर की है पीछे का जो ये लोग का कंटेनर है वो ऑरेंज रंग का है और ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं।

दीवाल का रंग देख पा रहा है यलो टाइप हल्का यलो कलर का है।

अ ढका हुआ पिलर बना हुआ देख रहे हैं जो ब्लू का यहाँ पे हम लोग--

इस फोटो के अंदर हम लोग एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं जो कि ब्लू कलर का टी शर्ट पहने हुआ है।

डाटा देख पा रहे हैं जो रेड कलर का है उसके ऊपर लिखा हुआ है ए_ सी_ सी_ सीमेंट--

दो साइड दो रास्ता देख पा रहे हैं जिसमें रेड और यलो कलर के टाइल्स पीछे हुए हैं।

में लाल सफेद और लाल कलर किया एक में ब्लू कलर किया उसके ऊपर होल्डिंग में लिखा हुआ स्टॉक होल्डिंग --

साइड में और एक दुकान देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है हेयर ट्रीटमेंट --

कुछ रेड कलर का यूनिफार्म पहना हुआ है।

और एक सफेद कलर का पैंट सफेद कलर का शर्ट पहने हुए एक ने ब्लू कलर का।

तीन को स्विच बोर्ड देख पार जो वाइट कलर का है कुछ कॉपी देख पा रहे हैं जो कि दो एक ब्लैक है एक रेड है पीछे में हम लोग कुछ--

बिल्डिंग का ऊपर सैमसंग लिखा हुआ उसके ऊपर भी हम लोग ओप्पो का महाजन टेलिकॉम देख पा रहे हैं इसके एंट्रेंस का दरवाजा कांच का बना हुआ है।

यहाँ पर हम लोग बहुत सारे प्लेट देख रहे हैं प्लेट को प्लेट वाइट कलर के हैं।

ब्लैक कलर पहना हुआ है और ब्लू कलर जीन्स पहना हुआ है.

ग्रीन कलर के ये सब चेयर लकड़ी से बने हुए हैं यहाँ पर देखो सोफा देख पा रहे--

होटलमेंमछली काट रही है जो कि ऑरेंज कलर के साड़ीपहनी हुई है।

इस फोटो के अंदर हम लोग एक बिल्डिंग देख पा रहे हैं।

और उनमें से तीन व एक ने व्हाईट कलर का बैग लिया हुआ एक ने बैग लिया हुआ एक ने रेड कलर का बैग लिया हुआ --

छाई कलर का जैकेट पहना हुआ है एक महिला टीचर ने यलो कलर का--

किचन का अंदर कुछ बॉटल दिख पा कुछ कल के जैसे एक तांबा का बोतल देख पा रहे हैं कुछ स्टील का बोतल देख पा रहा है।

बड़ा सा पेड़ देख पा रहे हैं एक सामने में टैक्सी देख पा रहे हैं।

इस फोटो को अंदर हम लोग रोड देख पा रहे हैं रोड में कुछ व्यक्तियों को देख पा--

बोर्डिंग देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है अलीगंज एक महिला का फोटो बना हुआ है।

कलोगों में एल_जे लिखा हुआ है सी_सी_टी_वी कैमरा देख पा रहे हैं कार देख पा रहे हैं जो सफेद कलर की बाइक देख पा रहे।

ने पूरा पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है एकने पिंक कलर का सलवार और सफेद रंग का--

जैसा कुछ देख पा रहे हैं और बहुत सारे भगवान् का कुछ देख पा रहे हैं कुछ देख पा रहे हैं।

बॉक्स देख रहे हैं जो कि ब्राउन कलर का है साइड में एक बॉक्स देख रहे हैं जो भी ब्राउन कलर का है इसका यहाँ पर--

बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि वायलेट कलर का इसका सामने का जो इंटर्स का जो दरवाजा है वो कांच से बना हुआ है स्टील से बना हुआ है।

गेस्ट हाउस इस के सामने में एक सीढ़ी देख पा रहे हैं जिसमें हम लोग--

टेबल के ऊपर रखा हुआ जो टेबल के ऊपर हम लोग गुलाबी कपड़ा देख पा रहे हैं सा में हम लोगडस्टबिनदेख पा रहे हैंजोब्लूकलरकाहैं।

साइड में कुछ व्यक्तियों को देख पा रहे जो ग्रीन कलर का सारी पहना हुआ है एक ने गोल्डन कलर का सारी पहना हुआ।

बहुत सारे टब का दुकान देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे तरह-तरह कलर का टब दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो के अंदर हम लोग एक मॉल का फोटो देख पा रहे हैं।

यहां पर साइड में कुछ हम लोग जूता भी देख रहे हैं बहुत कलर का--

सिलिंग कलर वाइट देख पा रहे हैं जहाँ बहुत सारी एल_ ई_ डी_ लाइट लगा हुआ है।

पीछे के दरवाजा देखो टाइलम का दरवाजा देख पा रहे हैं नीचे हम लोग फ्लोर का कलर --

कि कुछ कपड़ों का कलर यहाँ ब्राउन है ब्लू है ब्लैक है।

इनमें से एक ने दोनों ने चेक शर्ट पहना हुआ है लूंगी पहना हुआ है।

और गमछा एक ने माथा पे गमछा रखा है मुँह में ब्ल्यू कलर का मास्क है और एक ने गला पर गमछा रेड कलर का गमछा लिया हुआ है और माथा में एक सफेद तरह का बोरा लिया हुआ है एक ठेला देख पा रहे हैं यह तीन व्यक्ति को देख पा रही हैं जिसमे से एक ने --

से हम लोग कुछ कार देख पा रहे हैं जोकि वाइट कलर का है यहाँ पर एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं जो कि रेड कलर का गंजी पहने हुए है।

फ्लोर का कलर हम लोग वाइट देख पा रहे हैं एक सफेद कलर का डिब्बा देख पा रहे टायर देख पा--

सामने में हम लोग एक क्रॉस का साइन देख पा रहे हैं उसके सामने में--

एक हाथ में हम लोग इसका झंडा भी देख पा रहे हैं जो कि वायलेट कलर का है।

गुलाबी कलर का कपड़ा और व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है कपड़ा पहना हुआ है।

सारी पहने हुए महिला को देख पा रहे हैं एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं जो भा कलर का कोर्ट पहने हुए हैं लाल कलर का सेहरा --

क्रिकेट खेल रहे हैं उसके पीछे कुछ व्यक्तियाँ बैठे हुए हैं किसी ने सफेद कलर का--

एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं जो बेट के ऊपर बैठे हैं स्काई कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

सामने एक बेड देख पा रहे हैं पीछे में बहुत सारे बिल्डिंग देख पा रहे हैं।

सीलिंग का कलर हम लोग वाइट देख पा रहे हैं सीलिंग में एक लाईट देख पा रहे हैं सीलिंग में फैन देख पा रहे हैं।

माइक का पास एक व्यक बच्चा को देख पा रहे हैं कुछ फ्रीडम फाइटर्स का फोटो देख पा रहे हैं।